तिरंगा झंडा दिख रहा है बहोत ज्यादा बच्चे आए हैं खुला आसमान है।

बहुत ज्यादा धूप आया हुआ है दिन का समय है बहोत बड़ा--

यहां पर बहोत बड़ा मैदान दिख रहा है।

इसमें बहुत सारा बेकरी का सामान कॉफी वगैरह और--

एक औरत अंदर बैग लेकर खड़ी हुई है।

होटल दिख रहा है इस होटल में बहुत सारी लाइट --

काफी बड़ी बड़ी टेबल कुर्सी दिख रही है।

यहां की सुंदरता बहोत अच्छी--

चारों तरफ हरे हरे पेड़ है।

दिख रही है सामने एक बड़ा सा सुमिंग पूल बना हुआ है।

सामने बहोत सारे लोग हैं जो नदी में स्नान कर रहे हैं।

उसके पीछे एक गार्डन दिख रहा है।

बहुत सारा स्कूटर लगा हुआ है।

यह कोई बड़ा सा रोडवेज लग रहा है।